इसमे मुझे कुछ आदमी दिखाई दे रहे है ऐसा लग रहा है की यहाँ एक बैंक स्थित है यहाँ एक मेनेजर भी है लकड़ी का गेट भी है पर्स भी है वहाँ आग बुझाने के लिए गैस भी है।

यह राजेश किराना जनरल नॉलेज दुकान है यहाँ अपन के लिए तम्बाकू--

बीड़ी बंडल गुटखा जैसी चीजे मुझे दिखाई दे रहे यहाँ कप जो अपन चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते है यहाँ मकान गाड़ी सब दिखाई द रहे रोड --

इसी कारण यहाँ एक लाईव जहाज में घूमने गे उसमें गिरे ना इसलिए यहाँ एक दीवाल खड़ी कर दी गई है यह पोधे मंदिर दिखाई दे रहा है पेड़-पौध और फर्श --